नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ है।

डेबिट कार्ड लिए होते न यहाँ पे काफी सरे लोग लाइन में ठेला और बाइक स्प्लेंडर --

और शीशे लगे लगे वाली जो लाइट भी है कुछ लोग खड़े हैं बाइक है सुंदर होटल ।

पैसे निकालने के लिए पर अभी कोई नहीं है ए.टी.एम. के पास ।

देख सकते है ये राशन का दुकान है यहाँ पर मैगी है।

दस कमरे वाले हॉल है ये सुंदर है।